मेरे सामने एक छोटा सा बफर स्टोक लगा हुआ है जिसमें लोग खाना ले रहे हैं और इधर--

मेरे आगे एक रोड का एरिया है जिधर एक बहुत ऊँची दिवार पर घडी लगी हुई है पीछे बिल्डिंग्स है रोड पर बहुत सारे ऑटो और बाइक और स्कूटी है।

रोड के बगल में दुकाने है और इसमें होटल्स भी है और इधर लोग --

और पीछे जंगला है रोशनी --